सामने की ओर एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है सामने की ओर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

नीचे की जमीन मिट्टी से बनी हुई है सामने की ओर कई सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर की दीवार को लाल रंग से रंगा गया है और नीचे की जमीन को सफेद रंग के टाइल्स से बनाया गया है।

नीचे की और पीले रंग की लाइट भी लगी हुई दिख रही है और सामने की ओर एक स्विच बोर्ड भी नजर आ रहा है।

तेल में लाल रंग की कालीन बिछी हुई दिख रही है ऊपर की हिस्से की दीवार सफेद रंग की है जिसमें कुछ पंखे लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर एक व्यक्ति अपने टुकटुक पकड़ कर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

नीचे की जमीन मिट्टी से बनी हुई नजर आ रही है।

सामने की ओर की दीवार में पेंट से कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है।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

मेज के ऊपर कई सारी प्लेटें एवं पानी की बोटल और चम्मच रखी हुई दिख रही है।

सामने की ओर की दीवार को पीले रंग से रंगा गया है।

यह दृश्य एक तबेले का है जिसमें सामने की ओर कई सारे गाय नजर आ रही है और एक पेड़ भी दिख रहा है।

पेड़ में एक सीढ़ी भी अड़ी हुई दिख रही है।

गाय को रहने के लिए सामने की ओर एक चदरें की छत भी बनाई हुई है।

नीचे की ओर कई सारे गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले वस्तुआए भी दिख रही हैं और टायर भी नजर आ रही है।

सामने की ओर पानी पीने का जार भी दिख रहा है।